यहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है चर्च की--

ये एक यहां पे बड़ा सा शोरूम दिख रहा है।

जिम दिख रहा है वहां पे एक आदमी भी दिख रहा है यहाँ पे बहोत सारी--

ये एक यहां पे बड़ा सा--

सामने यहां टेबल पे स्प्रे वॉटर बॉटल --

और यहां पे बहुत बकिता हैं बड़े बड़े बहुत सारा सामान है।

डॉक्टर की पार्किंग बनाई गई है यहां पे बहोत सारे लोग--

चार लोग इस गेम को यहां पे खेल रहे--

इटांगिया कार्टून है मंडप मारा गया है बहोत सारे--